यहां पर कोई इंसान नजर नहीं आ रहा है। ये धूप के भी थोड़े से से पास में है क्योंकि यहां पे शाम हो चुकी है और यहां पे कोई इंसान नजर नहीं आने की वजह से सुनसान और थोड़ी सी डरावनी भी लग रही है देखने में।

व्हाइट और एक स्काई ब्लू की कंबिनेशन में है और एक घर नजर आ रहा है जो की बोहत ही ज्यादा सुंदर है लेकिन उसका कलर जाने की वजह से वो थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक कलर के हो गई है और यह सान्नाट है और ऊपर का हिस्सा खाली --

ये सजाया गया है | ये पूरा ही व्हाइट कलर का | एक फैन लगे हुए हैं जो कि ब्रा कलर के हैं | नीचे सोफा है जो कि रेड कलर के हैं और नीचे का जो हिस्सा है वो बहोत ही ज्यादा क्लिन है वो थोड़े से ब्राउन कलर के | सामने का जो गेट है वो खुला हुआ--

यह मोटर का जो हिस्सा है वो बोहत ही ज्यादा बड़ी है उसके साइड में रेलिंग्स लगे हुए हैं। नीचे का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मिट्टी वाली है और तो इस लिए बीच का रोड बनाया गया है। यह सुनसान और सन्नाटा है।

समय है इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं है उतनी और यहाँ पे कुछ पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। भीड़-भाड़ लग रही हैयहाँ पे कुछ औरतें जा रही हैं कुछ ने मास्क पहने हुए हैं कुछ ने ऐसे ही है सारे ने सूट पहने हुए --

वो नज़र आ रही है। सामने पूरा ग्राउन्ड नजर आ रहा है और यहाँ पे एक पेड़ लगाने के लिए साइड से किया गया है वो नज़र आ रहा है। वो देखने मे अच्छा लग --

पुराने घर के सामने एक मंदिर नजर आ रही है। ऊपर झंडे नजर आ रहे हैं। यहां पे सूखे हुए पत्ते नजर आ रहे हैं। सूखे हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। यहां पे सन्नाटा नजर आ रहा है। यहां पे घर के अंदर का हिस्सा नजर आ रहा है। ये व्हाइट कलर --

बहोत सुन्दर वादियां नज़र आ रही हैं बहोत ज्यादा पेंटिंग के जैसे लग रही है। बीच में थोड़ी सी पानी जमी है वादियों के कलर और पानी का कलर सेम लग रहा है। यहाँ पर यहाँ पे पौधे नज़र आ रहें हैं और ये देखके बहोत --